ये लोहाड़ी रोड दादरी का मेडिकल स्टोर है मेन रोड पर इसने मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और साथ ही में एक पोस्टर लगा हुआ है।

अ रेड व्हाइट और ब्लू कलर के बैलून का यूज किया हुआ है इन्होने जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया है बाहर तीन चेयर है रेड कलर की।

ये जो आप फोटो देख रहे हो ये एस_बी_आई का जो ब्रांड लगा हुआ है यह श्री वाला--

और कुछ व्हाइट पॉलिथीन का बंडल है इसमें और सी_सी_टी_वी कैमरे भी लगे हुए हैं आसपास आप देख सकते हो।

आगे ये जो फोटो देख रहे हो ये एक शादी के फंक्शन का फोटो है जहां पर कुछ ब्रदर और सिस्टर अपने आपस में फोटो ले रहे हैं कपल भी है बीच में।

और उनके पीछे आप देख सकते हो व्हाइट और रेड रोज की डेकोरेशन की गई है इसमें।

बड़ा स्पेस में से दिया हुआ हैं दूसरी तरफ आप बिल्डिंग के बाहर देख सकते हो पार्किंग है।

आप यहां पे सभी तरह के काम करवा सकते हो आके और आपको यहां जल्दी से जल्दी सुविधा में उपलब्ध काम कराया जाएगा।

ये जो फोटो आप देख रहे हो ये क्लास रूम का फोटो है जिसमें बहोत सारे बैंचेस है ब्लू कलर के और ब्राउन कलर के--

वो है जो इनका चेक कर रही हैं ये होस्टल है एक सभी घर के कपड़े पेहने हुई हैं।

ये जो आप दुकान देख रहे हो ये एक परचून की दुकान हैं जिसमें कुछ लंच बॉक्स और--

और जो ये विद्या इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा हुआ है इसके जस्ट नीचे ही एक टीन के नीचे आप देख सकते हो एंट्री गेट है जहां से आप अंदर जा सकते हो।